अह मूर्ति बनाई हुई है और बाहरी विश्वविद्यालय नंबर वन पठानकोट लिखा हुआ है।

बता रहे हैं और पीछे उनके सीनियर जो बैठे हुए हैं वो भी देख रहे--

गाड़ियां ठीक होने के लिए आती हैं।

और उनके भक्तों की फोटो रखी हुई है जहां पे काफी भी लोग जो है वो आए हुए हैं।

ए_एम पी_एम के वन वन स्टार स्टॉक सॉल्यूशन के नाम से--

नोट रेडमी नोट प्रो और --

और पीछे लोहे का काफी लोहे--

और एक एक्टिवा भी है वाइट कलर की।

यहां पे एक आदमी जो वो बैठा हुआ है और उसके सामने जो है--

और इसमें कुछ जो टमाटर हैं वो एकदम रेड रेड टमाटर हैं और कुछ टमाटर इसमें जो है वो--

एक शाप है जहां पे आइडिया आइडिया --

यहां पे ना दो बसें खड़ी हैं।

डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो है फैन डेमो के लिए रखे हुए हैं।

रेड कलर की जो है वो ड्रेस --